जैसा कि आप सभी लोग--

इस इमेज में देख पा रहे हैं--

जैसा कि हम सभी लोग इस ईमेज में देख सकते है।

जैसा कि हम सभी लोग इस इमेज में देख सकते हैं।

हम सभी लोग देख सकते है कि--

इस इमेज में देख सकते हैं कि आसपास--